अउ बादल है एकदम घंगोर घटा छाये हे ऐसा लगथे पानी गिरही कहुक ले आऊ बादल एहा जात है अ अ टूरा झी बैग धर के एरोप्लेन मे-- ।

एहा बिलासपुर के हवाई अड्डा ए जकर भाटा मा उहा ले इहा लेंड होइ से कहुंक लागत हे लागत हे मतलब ओती ले आइसे त रुकिसे कहुंक लागत हे।